यहां पर एक अलमारी भी रखी हुई है जो की लकड़ी की है।

और यहां पर आग बुझाने का यंत्र रखा हुआ है।

पनीर का एक बड़ा सा पीस है एक नींबू भी है।

यहां पर बड़े से बोर्ड पर एयरटेल फोर जी लिखा हुआ है।

जिसमें एक व्यक्ति फोन पर बातें कर रहा--

इसमें टोटल छे पंखड़िया है यह किसी फर्श पर रखी हुई है।

कुछ और महिलाओं के हाथ भी दिखाई दे रहे। पीछे लाल कलर का एक बोर्ड है।

परदे भी लगे हुए हैं पीछे क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ--

यह एक वॉटरफॉल है जिसमें बहोत सारे व्यक्ति नहा रहे हैं।

जिसमे बहोत सारे अमरूद रखे हुए है बाइक भी है।

यहां पर बहोत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने डॉक्टर्स के कपड़े पहने हुए हैं।

लाइटें लगी हुई है कुछ लाइटें जल रही है।

यहां पर सीसे के अंदर कुछ रखा हुआ है।

जिनमें से कुछ की आकृति पतीली के जैसी है।

इस चित्र में फरस पर सफेद और ब्राउन कलर की टैलें लगी हुई हैं।